वैका उंडे फुंडे कुछ लोग छन दिखेण लग्यां पार बिटि एक नौनियाल और छ बैठ्युं ओर पोर हम ते कुछ सरिया अर माटु दिखेण छ लग्युं।

ये चित्र मा हमथे एक बड़ी जगा दिखेण लगीं जोमु भाप मनू भौत सरू पाणी दिखेण लग्यूं दिखेण जी जगा एक वाटर पार्क छा लगण लगिम जौणी हमथे यखम भौत सारी फिसर पट्टेन दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक बड़ी जगह दिखेण लगीं जु दिखेण से एक मॉल छ लगण लग्युं जै एंच फणी बहोत सारी लैट छ चमकण लगीं पार फणा बहोत सारी लैट छ चमकण लगीं।

ये चित्र मा हम त एक जगह दिखेण लगीं जख मा एक बड़ी नीला रंग की ऑटो रिक्शा खड़ी छ होयीं दिखेण से बहोत नयी लगण लगीं।

वा फणा हमते कुछ डंडा भी दिखेण लग्यां ओर-पोर बड़ा-बड़ा ढुंगा उंडे बिटी हमते एक बडु समुन्द्र दिखेण लग्यु पार फणा हमते बड़ा बड़ा जंगला दिखेण लग्यां एंच ड्योर पर भी हमते बद्दल छ दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमथे एक बड़ी जगा च दिखेण लगी यखम अगाड़ी हमथे स्टेज कर दिखेण लग्युँ जैका एैंच फणा हमथे द्वी सोफान दिखेण लग्या।

वैका पैथर एक बड़ू डालू दिखेण लग्यूं जैफर एक बोर्ड लग्युं वैफर कुछ लिख्युं भी या ओर-पो हमथे और भी डालान दिखेण लग्यां कुछ झरणाम दिखेण लग्यां यखम हमथे ईमारत दिखेण लगीं जु दिखेण से एक होटल लगण लगीं वैका भितर फणा हमथे कुछ कुर्सी मेज भी दिखेण छ लग्यां।

दिखेण से जु न एक वाटरपार्क छा लगण लगीं जफणा हम ते कुछ गोल गोल चीज़ें दिखेण लगीं जूं का बिच फण पाणी ओण लग्युं।

यह चित्र में हमथे एक जगा दिखें लगी जमणे हमथे एक बड़ी इमारत दिखेण लगीं जैका भैर बटी एक बडू बोर्ड लग्युं और वैफर कुछ बण्यू भी छा।

ये चित्र मा हमथे एक जगा दिखेण लगीं जु दिखेण छि एक तबेला कार लगण लग्यूं।

एैंच फणा हमथे छप्परन दिखण लग्यां दीवाली फर हमते एैंच द्वि खिड़कियन दिखेण लगीं वामा हमथे एक बडू भैसु देखण लग्युं अर एक थोल्दु दिखेण लग्युं जूँका कान पर कुछ टैग करन लग्यां अर वू दौउ पर बांध्या छ।

अगाड़ी हमते एक बडु स्टेज दिखेण लग्युं जेका और-पोर डीजे रखीं ऐंच पणी हमते लुआं का एंगल पर बड़ी-बड़ी लाइटन दिखेण लगीं जो चमकणा छन लगीं।